इस तस्वीर में कुछ जंगल जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे पेड़-पेड़ लगे हुए है और कु काफी मैदान दिख रहा है यहाँ पे हिरन वगैरह भी जो मतलब जो घास चरति हुई नज़र आ रहे है।

कुछ तीर जिसमें तीन तीन तीर लगे हुए है और ये लड़का स्टाइल बनवा के खड़ा हुआ है।

और उसके मतलब रोड के बाजू से एक कार दिखाई दे रही है और यहाँ एक टैक्सी भी दिखाई दे रही है और लोग भी दिखाई दे रहे है।

और पिंक कलर के फूल भी रखे हुए है कुछ यहाँ पे मालाए बनी रखी है जो की येलो और ग्रीन और पिंक कलर के फूलो से बनी हुई है और उसके बगल में कुछ फल दिखाई दे रहे--

और उसके बाजू में खोली बनी हुई है और उसके यहाँ सटक डली हुई है और यहाँ पे हम्म बहोत सारे ये तसले वगेराह कुछ डले हुए है गिट्टी डली हुई है।

और यहाँ पे खाली-खाली मैदान दिख रहा है और उसके बाद उसके आगे हरे-हरे पेड़ दिखाई दे रहे है।

और उसके और उसके बाजू में एक चेयर रखी हुई है और उसके बाजू में भी एक चेयर रखी हुई है और यहाँ पे काफी अच्छी सजावट दिखाई दे रही है शादियों जैसे लग रहा है।

और ये और ये ऊपर अ-अ मतलब मंदिर जैसा दिख रहा है उसका सीन --

और उसके आजू-बाजू पेड़ ही दिख रहे है और ये चट्टान जैसी दिख रहा है पहाड़ पहाड़ जैसी लग रहा है और उसके पीछे कुछ धुंधला दिखाई दे रा है।

है और पीछे एक टेन्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कुछ-कुछ पीछे पत्तिया भी लगी दिखाई दे रही है और कुछ लेडीज भी है कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे है बहौत सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए है।

--म यह एक घर बना हुआ हैं उसके सामने बहोत सारी बाइक रखी हुई हैं और जो हैं इधर एक आदमी आते हुए नजर आ रहा हैं।

की जोकि हरे-भरे दिख रहे है और उन और उस मतलब की तालाब में कुछ फूल भी दिखाई द दे रहे है जोकि पिले कलर के है

और इसमें चैनल गेट लगा हुआ है और उसके सामने एक बाइक और एक बाइक हरे कलर की रखी हुई है और इसके बाजु से भी--